जैसा कि आप लोग इस इमेज में--

जैसा कि आप सभी लोग इस इमेज में देख पा रहे हैं कि--

इन इन इनकी कई सारी गाड़ियाँ और कई सारे लोग ए_टी_एम के बाहर मौजूद हैं।

एक इमेज में देख पा रहे हैं कि यह इमेज एक रेस्टोरेंट की है।

पेड़ है जिसके पत्तों का रंग लाल है।

इस इमेज में एक बड़ा सा स्कूल दिखाई दे रहा है।

जैसा कि आप सभी लोग इस इमेज में अपनी आंखों से देख पा रहे हैं।

मंदिर की है जहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रखी है।

इस इमेज में देख पा रहे हैं कि एक सफेद रंग के कपड़े पहने हुए--

जो की हरियाली का सबूत है।

जोकि देखने में बहोत अच्छे लग रहे हैं।

इमेज में देख पा रहे हैं की--